यह एक पत्थरों से घिरा हुआ जल प्रपात है जहां पर पत्थरों के बीच से पानी आ रहा है।

हरे कलर का कारपेट भी बिछा हुआ है साइड में एक टेबल भी है जिसके सामने दो कुर्सी रखे हुए हैं।

सफेद बिल्डिंग के आगे एक कार खड़ी है।

कुर्सी के बगल मे एक डस्टबिन भी रखा हुआ है।

रूम में एक पंखा भी लगाया गया हैं रूम में तीन शटर दिये गए हैं।

यहां एक मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर है जिसके साइड से एक रास्ता भी निकला हुआ है।

इसके गेट पर लिखा है कि प्रवेश वर्जित क्षेत्र--

गेट को आधा लाल तथा आधा हरे रंग से पेंट किया गया है।

एरोप्लेन के सारे चक्के नीचे में ही है।

यह एक फिटनेस एकेडमी का फोटो है जहां पर एक लड़का कैमरे से फोटो ले रहा है।

चर्च को गुब्बारे द्वारा अंदर से बाहर तक सजाया गया है।

डॉक्टर के पीछे एक महिला तथा एक नर्स भी खड़ी है सारे डॉक्टर्स और नर्स ने मास्क लगाए हुआ है।

नारंगी रंग की टेबल के पीछे एक काउंटर भी बना हुआ--

तालाब के बिच बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है तथा तालाब में बॉर्डर के लिए खंभे भी गड़े गए हैं।

यह एक मसाज रूम है जहां पर दो थेरेपी कुर्सी लगे हुए हैं।

चेयर के पीछे बहुत सारे क्रीम रखे हुए हैं।